फोटो ले रही हे व उसके पीछे एक बोट हैं उसके ऊपर एक आदमी हैं और यहाँ ज्यादा पत्तर हैं।

और वो इंग्लिश में भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ तो एक बच्ची है वो तो ब्लू कलर का--

ये तो एक बुक स्टाल है इसका नाम तो तेजा बुक स्टाल लिखा हुआ है यहाँ अ और यहां तो कुछ--

यहाँ अ ये ग्राउंड है ना कुछ मिट्टी से ज्यादा मिट्टी से हैं।

और एक आदमी जंपिंग कर रही है और वहाँ ट्रेडमिलर भी है और साइकलिंग का भी हैं।

ये तो एक रोड हैं यहाँ तो यहाँ तो ज्यादा अ बढ़िया ट्रॉपिक हैं यहां एक--

ये तो कुछ ऑफिस जैसे लग रहा हैं यहाँ तो नारियल पेड़ ज्यादा दिख रहा है और आम का पेड़ भी दिख रहा हैं।